यह एक दुकान है दुकान में बहुत सारा कुर्सी लगाया हुआ है और बेड भी लगाया हुआ है।

रोड पर बहुत सारे बाइक लगाया हुआ है रोड पर बहुत सारे आदमीन भी खड़े हुए हैं।

टोकरी में टमाटर रखा हुआ हैं आलू रखा हुआ है।

कोई काम कर रहे हैं कोई खड़ा है और बहुत सारे नारियल का पेड़ भी लगाया हुआ है।

घर का रंग व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।

महल के बाहर रोड पर गाड़ी लगाया हुआ है और बाइक भी लगाया हुआ है।

रोड पर गाड़ी भी है। और साइकल भी लगाया हुआ है।

झंडा फहराने का तीन रंग का बनाया गया है रोड के बाहर डस्टबिन भी है।

ऑफिस में कुर्सी लगाया हुआ है ऑफिस में दरवाजा भी है।

यह एक बहुत बड़ा घर है घर में बहुत सारा खिड़की लगाया हुआ है।

यह एक आपिश है आपिश में बहुत सारे टेबल और कुर्सी लगाया हुआ है।

कुछ चित्र लाल कलर का है कुछ चित्र पीला कलर का है कुछ चित्र व्हाइट कलर का है।